एक बाउंड्री को भी बनाया गया है और उसके आसपास में ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर नीचे में ढेर सारी चीज और भी रखी गई है।

यहां पे कुछ गेट दिखाई दे रहे हैं।

और शीशे को भी रख दिया गया है।

इस तस्वीर में ढेर सारे लोग एक ग्रुपिंग में बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ ए_सी कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ कपड़े को टांगा गया है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पे ढेर सारे कुर्सी को लगाया गया है।

दो कुर्सियां लाल कलर की दिखाई दे रही हैं।

में सब मुर्गे बैठे हुए हैं और यहां पे मुर्गी के दाना दाने वाली चीजें भी रखी गई है जो रेड कलर की है।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

ऊपर में ढेर सारी लाइटों को लगाया गया है।

ईंट के ऊपर में मैरी गोल्ड के फूल को लगाया गया है।

बड़े बड़े लाइट्स भी लगाए गए हैं।

दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

इसके आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

ढेर सारे फू पेड़ पौधे लगाए हुए है।

यह किसी हॉस्पिटल का दृश्य जैसा नजर आ रहा है।

यहां पे एक बैनर के पास वी_आई_पी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

पॉट में छोटे छोटे पौधे और इसके शीशे को भी को भी लगा दिया गया है नीचे का फर्श दिखने में काफी प्यारा लग रहा है सबसे यूनिक --

बोर्ड के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड लिखा हुआ नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का है और उसमें एक डिजाइन भी बनाया हुआ है।

अंदर में एक पीले कलर का घर दिखाई दे रहा है और यहां पे कुछ बाइके भी लगाई गई है।

लोहे का पिलर्स लगाया गया है वो भी ब्लू कलर का है।

यहां पे पीछे में घड़ी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक्सिस बैंक के यहां पे ब्रांच हो सकते हैं जो डाल्टनगंज ब्रांच है।

कुछ और भी दुकाने दिखाई दे रही है।

दुकान के पास ही में दो तीन शटर लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ मीटर को भी दिखाई दिया दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ कार्टून को भी चिपका दिया गया है।